जिसमें कांच की बॉटल है लाइट लगी है आजू बाजू --

लाइट है खिड़की है पर्दा है।

यह एक पहाड़ के ऊपर बगीचा है।

यहां पर बहोत सारे सुखे हरे झाड़ है।

सूरज की रोशनी आ रही है ऊपर नीला आसमान है।

यह एक मिठाई नमकीन की दुकान है।

दो दरवाजे हैं दो टायर है।

बहोत सारी दुकानें है एक पेंट की दुकान है।

गाय के सामने एक छोटी सी टोकरी भी रखी है।

खिड़की है सफेद कलर की टाइल्स है।

इधर ऊपर आसमान है बहुत सारे झाड़ है।

कुर्सी है खिड़की है सीडी है।

कुल्हाड़ी चाकू पुराने जमाने के सब रखे गए हैं।

जिसका ए_टी_एम भी है और बैंक भी है।

इसमें बहोत सारी लाइट लगी है केक का चित्र है।

जिसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

इस चित्र में दो आदमी घर बना रहे है।

इस चित्र में आदमियों का एक सैलोन है।

जहां गाड़ी खड़ी है बहोत सारा सामान है।

यह एक मकान के बाजू का स्विमिंग पूल है।

इस चित्र में बहोत सारे आदमी है।

यह एक जिम है जिसकी ओपनिंग है।

बहोत सारे लोग हैं जो कुर्सी पे बैठे हुए है।--

इमसें आजू बाजू छोटे छोटे घर बने हुए हैं।

आसमान है छोटी छोटी कुर्सियां है।

एक तरफ से उजाला भी आ रहा है।

जहां पे महिलाएं पुरुष बच्चे सब पूजा कर रहे हैं।

दो बड़े और एक छोटा पुतला है।

लाल कलर का फ्लोर है एक छोटा सा टेबल है।

घर के ऊपर पतरे लगे हैं वायर लगा है।

जहां लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं।